यह बिल्डिंग कार्यरत में है। यह बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे --

यहाँ बच्चे खेल रहे हैं यह बहुत सारे बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं । सभी बच्चे एक ही ड्रेस पहने हुए हैं । यह बहुत अच्छा --

यह किताब दुकान है । इस दुकान मे कलम कॉपी रोल पेंसिल रबर कटर और बोहोत सारे समान मिलते हैं। यहाँ किताब भी मिलता है। बहुत बच्चे किताब पेंसिल --